झंडे लगे हुए है बाइक दो तिन बाइक खड़ी है।

मौसम साफ है पहाड़ी है हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

मंदिल के पास मे गमला रखा हुआ है और मंदिल का कलर भी येलो कलर --

गमले रखे हुए हे जिस में बहोत सारे पेड़ पोधे लगे हुए हें एक बड़ा सा गमला हे जिस में --

वाइट कर के कुछ सामान पैक करके रखा हुआ है और बहार में ईटा पत्त्थर है।

एक आदमी खड़ा होके उनको देख रहा है एक इटे का भी बना हुआ है पानी को रखने के लिए --

और उपर से इनको छाया हुआ है किसी पल्स्टिक के और बिच में उ बहोत सारे पास लगे हुए है।

ये एक रूम है जिसमे वाइट कलर का किया हुआ है कलर जिसमे नीचे में टाइल्स से मार्बल बिठाया हुआ है।

किआ हुआ है ओपेनिक फैन लगा हुआ है और एक मिरर है और --

और बहोत से दूर लेडिस है और बा बहुत सारे जेंट्स बैठे हुए आपस में सब बातचीत कर रहे हैं।

यह बहुत ही अच्छा सब कोई मूर्ति ले जा के करने के लिए जा रहें हैं दुर्गा मां का मूर्ति है।

आइ नो सब इसान करने जा रहे है।

किआ जा रहा है बहत सी लडकिया बहत सी इतनी ग्रुप्स है।

नसरी टू एट स्टेंडर बेस्ट ओंन सी_बी_एस_सी --

ये एक घर टाइप का है छत का व्यू दिया हुआ व्यू --

दो तीन एक अ बहोत अलग सा कलर हे और--

बड डे है फोटो लगाया गया है बहत सारे बलून से ब्लॉक और गोल्डन --

बर्डे का फोटो चिपकाए गए एक डेकोरेट एक टूल है।

कलर का टूल है बहोत सारे बॉक्सेस बने में पर्दे भी है यहां--

एक छोटा सा दुकान है जिसका नाम है राज सीमेंट एंड आयरन स्टोर अल्ट्रा ट्रेक सीमेंट ।

रखा हुआ है और बहोत सारे लोग अपना काम करें पास लोग बैठ के बातें कर रहे बहोत लोग यहां आस पास घूम रहें--

बैग निकला होता है और कोई कोई कलर मिक्स है फिनाइल का बोत्ताल्स रखे हुए है।

बहुत सारे चार ऐसे गोला करके बनाया गया है अम इसमें बहुत सारे कलर --

और गाड़ी को बहुत अच्छे से सजाया गया है बहुत ज्यादा लाइटिंग डिम डिम कर रही हैं बहुत सारा लाइट जो डिम डिम कर रहा है।